रैक मे कुछ सामान रखा हुआ है और सामने एक वॉश बेसिन लगा हुआ है जिसके बाजू मे एक डस्ट्बिन रखा हुआ है जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक बहुत बड़ी खिड़कि लगी हुई है।

और सामने एक छोटा सा पहाड़ी जैसा है इलाका है जिसमें की बहु तीन चार लोग चढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पहाड़ी पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

इस जिम मे बहुत प्यारी लाईटिंग लगाई गई है और आप देख सकते है इस जिम का कलर ग्रीन कलर है।

और काँच के गेट लगे हुए है और दोनों तरफ दो खिड़किया भी लगी हुई है इस मकान मे सफ़ेद कलर किया गया है सामने की तरफ कुछ मोटरसाइकले भी खड़ी हुई है।

जैसा की आप देख सकते है शाम का समय है यहाँ पर सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ छोटे मकान बने हुए भी है।

की आप देख सकते है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे की ऊपर की तरफ खिड़कियाँ लगी हुई है और इस बिल्डिंग मे टाइल्स लगे हुए है।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है इस तालाब के बीच बीच मे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है जो की पानी मे लगे है।

पेपर या कागज रखे हुए है और इस मकान मे उपर पंखा भी लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख सखते है। यहा पर बहुत प्यारी लाइट लगी हुई है।